इस तस्वीर हमें ऊंचे-ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहें हैं और ये द्रिश्य काफी सुंदर लग रहा है।

वहाँ सब आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ सामान बना रहें हैं उनके साथ हमें एक सिस्टर को भी खड़ा हुआ देख सकते है जो उनका निरक्षण करती हुई नज़र आ रही है।

इस तस्वीर मे हमे काफी सुंदर नाजरा दिखाई दे रहा है।

जोकी फ़िलहाल खुल्ला है आसपास कोई भी वाहन या कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है।

और उसके साइड में हम काफी सारे प-पौधों को उगा हुआ देख सकते हैं कोई भी वाहन भी दिखाई नहीं --

नदी का पानी काफी साफ लग रहा है और आस-पास हम ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों को भी देख सकते हैं।

उनपे पीले रंग से पेंट किया गए है उनके वस्त्र बनाए गए हैं और वह ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं।

हाउसिंग सोसाइटीस दिखाई दे रही हैं यहाँ पे हम काफी सारे घर देख पा रहे हैं ऊंची-ऊंची बिल्डिंगस दिखाई दे रही हैं।

इसका बोर्ड नीले रंग का है और हरे रंग का है नीचे ए.टी.एम. का दरवाजा कांच का बना हुआ है और वो खुला हुआ है और हमे सामने --

बाइकों को भी खड़ा हुआ देख सकते हैं।

एक किनारे पे हम काफी बड़ी सी एक नाव को देख सकते हैं जो की किनारे से बंधी हुई हैं।

वादीयां और पहाड़ियां दिखाई दे रहीं हैं जो ये काफी सुंदर है आसपास हम काफी छोटी पहाड़ियों को भी देख सकते हैं जिसपे --

पेट्रोल भराने के लिए इंतजार कर रहें हैं आगे हमे ऐड्वर्टाइज़्मन्ट का डिस्प्ले दिखाई दे रहा है।